सड़क है सड़क पर बहुत सारे काले पीले अ डबल शेड के ऑटो खड़े हुए हैं लाइन से बहुत सारे | एक पीछे जंक्शन में लिखा है एक बिल्डिंग बनी हुई है आसमान है पेड़ है खम्बा खड़ा है।

पहाड़ है पहाड़ी इलाका है हरियाली है पेड़ है आसमान में बादल भरे हुए है सूरज को छुपाये हुए है पानी भरा है।

फूलों की गेंदे की दो मालाएँ डली हुई है पीछे एक दीवार है।